यह ऑफिस दिख रहा है यहा कुछ व्यक्ति दिख रहे है।

यहा चेयर दिख रहे हैं यहा काउन्टर दिख रहे हैं।

यहाँ नदी दिख रही है यहाँ पेड़-पौधे दिख रहे है ये बैनर दिख रहे है यहाँ कुछ व्यक्ति दिख रहे है यहाँ आसमान दिख रहा है।